यहां पर एक टोकरी के अंदर पता नहीं क्या है एक टोकरी लगी हुई है ऊपर उसके ऊपर कुछ कलर लगे हुए हैं रेड कलर ।

यहां पे एक एक आदमी है जो एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर और हाथों के अंदर शूज रखा हुआ है--

और राइट साइड में भी गाड़ियां जा रही है और सामने कुछ होटल दिख रही है बहुत बढ़िया--

ये किसी फैक्ट्री का नजारा है जहां पर राइट साइड में पत्थर है और लेफ्ट साइड में भी पत्थर है।

हरियाली हरियाली है छोटी-मोटी और पेड़-पौधे दिख रहे हैं यहां पे।

ग्रीन कलर का पर्दा दिख रहा है और जो डॉक्टर है उनका शर्ट है वाइट कलर का।

ये एक कार दिख रही है इसके दो गेट खुले हुए हैं और कार नंबर कार प्लेट नंबर दिख रहे हैं।

यह एक ऐसा यंत्र है जहां पे अगर कई घरों में आग लग जाती है तो ये एक पाइप लगी हुई है यहां से बुझाया जा सकता है रेड कलर का पाइप दिखा हुआ है।

और कुछ यहां पे अ पानी भी दिख रहा है आता हुआ नीचे--

और कुछ खिड़कियां लगी हुई है सामने--

स्कूल का नजारा दिख रहा है जहां पे गेट खुला हुआ है और--

और स्कूल का कलर है रेड कलर का वाइट कलर की पट्टी है।

और ब्रश लगा हुआ है और वायर नीचे पड़े हुए हैं।

और ऊपर कुछ छाया करने के लिए कुछ लगा हुआ है लोहे का--

और राइट साइड में कुछ पेड़ दिख रहे हैं और कुछ एक अ बड़ी कंपनी दिख रही है।

और सामने कुछ दो बड़े-बड़े स्तंभ दिख रहे हैं जहां ऊपर आग निकलती है और लाइट का एक खंभा दिख रहा है सामने--

और एक कुर्सी दिख रही है और कुछ अ रंग बिरंग की लाइट लगी हुई है अंधेरा आसपास दिख रहा है।

और राइट साइड में एक गेट दिख रहा है गेट के बगल में एक आदमी खड़ा दिख रहा है और अंदर वहां पे लाइटें जली हुई है।

यहां पे एक पौधा दिख रहा है बहुत लंबा उसके बगल में खंभा है लाइट का और उसके बगल में एक गाड़ी है।

वाइट कलर का अ पजामा पहन रखा है ऊपर बनियान पहन रखा है।

और यहां पे जिम करने की छोटी-छोटी मशीनें दिख रही है बड़ी-बड़ी--

वाइट कलर का रूम है एक लड़की की फोटो बनी हुई है और दो पौधे दिख रहे हैं पौधे लगे हुए हैं।

का नजारा दिख रहा है जहां पे गाड़ी है और कुछ अ तीन ग्रीन बिंदियां दिख रही है लाइट चली हुई है दो रेड कलर की है।

और यहां पे अ वाइट कलर की पट्टियां दिख रही है ब्लैक सड़क के ऊपर--

यहां पे एक मंदिर जैसा दिख रहा है जो पूरा रेड कलर का है और ऊपर ही ऊपर गोल्ड कलर का कुछ उसका --

और दूर-दूर तक बच्चे खड़े दिख रहे हैं और इस पूल के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है।

और एक दो पेड़ पौधे दिख रहे हैं और लेफ्ट साइड में पहाड़ी दिख रही है।

यहां पे एक मंदिर दिख रहा है मंदिर पे लाइटें लगी हुई है बहुत सारी।

यहां पे एक एरोप्लेन दिख रहा है यहां पे जिसका--

आसमानी रंग का वो उसका कलर है टायर दिख रहे हैं उसके।

मोटर बोलते हैं इसको और वहां पे सीढ़ियां दिख रही है लेफ्ट साइड में--

राइट साइड में भी खाली पट्टी दिख रही है एक सीट बैठने की सीट भी दिख रही है।

यहां पर सूर्य अस्त का नजारा दिख रहा है सूर्य का और पेड़-पौधे दिख रहे हैं लेफ्ट राइट में--

बहुत बड़ा सा दिख रहा है और गेट लगे हुए हैं लेफ्ट राइट के अंदर।

जो व्हाइट कलर का मुख है और ब्लैक कलर का उसका कुछ धब्बे लगे हुए हैं पेट के ऊपर--

यहां पे कुछ घर का बाहर का नजारा दिख रहा है दो-तीन गाड़ियां खड़ी दिख रही है वाइट कलर की।

यहां पर अंधेरे का नजारा दिख रहा है नाइट का यहां पे जो घरों के अंदर लाइट लगी हुई है वो दिख रही है व्हाइट कलर की बहुत छोटी-छोटी।

एक इस दुकान का बाहर अ अ दुकान का नजारा है जहां पे अ नाई बाल काट रहा है लोगों के सिरके से--

ये एक कार शोरूम का दिख रहा है जहां पे एक गोल्ड कलर की कार दिख रही है उसके ब्लैक कलर के टायर हैं।

और लेफ्ट साइड में भी कुछ कार दिख रही है कुछ पोस्टर दीवार पर दिख रहे हैं दो ऐ_सी दिख रही है।

नाले के और नाला का पानी बहुत गंदा दिख रहा है छोटे-छोटे हरियाली दिख रही है पेड़-पौधे दिख रहे हैं यहां पे छोटे-छोटे--